और बाहर पौधे लगे हुए हैं बालकनी भी नजर आ रही है।

और बा आसपास पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

एक रूम है दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है लैब ।

और कान्हा जी की पीछे फोटो भी बना हुआ है। एक लेडी है जिसके हाथ में गिफ्ट भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक अंकल है जिन्होंने ब्राउन कलर का ब्लेजर पहना हुआ है।

एक लड़की भी बैठी हुई दिखी है दिख रही है।

और कोई बच्चा या कुछ और नजर यहां पर नहीं आ रहा दिन का समय है।

और एक पीछे अलमारी नजर आ रही है जिसमे शायद कुछ दवाइयां रखी हुई है।

इस फोटो में एक खड़ी हुई है।

पीछे एक और लड़का है वो भी पैदल आने लग रा है।

एक अंकल है जो अपना फोन चला रहे हैं कुछ लेडिस है जिनके पास बैग भी है। दिन का समय है और यहां पर पेड़ पौधे हैं।

चार बच्चे हैं जोकि नाचते हुए नजर आ रहे हैं दो लड़के हैं दो लड़कियां हैं और पीछे लिखा है स्कूल विद लेटेस्ट स्टैंडर्ड --

सामने लिखा है सी_एन_सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक बड़ी सी बिल्डिंग है बाहर एक कुलर रखा हुआ है कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

यहां पर एक रिसॉर्ट है साइड में लिखा है पार्क प्लाजा ग्रीन रिसॉर्ट साइड में हनुमान जी की बड़ी सी एक मूर्ति है।

पीछे एक बंदा चल के जा रहा है।

स्पोर्ट्स का यहां पे सामान है एक लड़का खड़ा नजर दिखाई दे रा है बाहर एक एक्टिवा खड़ी है एक बाइक खड़ी है।

चेयर पे बैठा हुआ है जो कि ब्लू कलर --

इस फोटो में चार बच्चे दिख रहे हैं जो कि गिटार बजा रहे हैं पीछे भी एक गिटार लगा हुआ है दीवार पे और एक गिटार नीचे रखा हुआ है।

दीवार पे एक ऐ_सी लगा हुआ है काफी सारी फोटो लगी हुई हैं एक गेट है।

दुकान है दो शटर लगे हुए है एक दुकान के बाहर काफी सारा सामान रखा हुआ है।